तंदूरी चाय स्पेसलिस्ट दुकान है। इसमें बिस्कुट रखा हुआ है पाव रोटी रखा हुआ है।

दोनों का लोल बड़ा-बड़ा है। देखने में सुंदर लग रहा है। दोनों पानी में तैरता --